यह एक बिल्डिंग है जो की पीले कलर की है। इसमे चार-पाँच विंडो दिख रही हैं काले पाइप पड़े हुए हैं।

यह एक पुल है। पुल मे कलर है व्हाइट एण्ड ब्लैक । और नदी बह रही है नदी के किनारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो की हरे हैं ऊपर आसमान दिख रहा है।

सूर्य उदय हो रहा है और उम्म बहुत सारे बिल्डिंग दिख रही है जिनके कुछ विंडो भी दिख रही है ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

एक सफेद कलर की पिकअप खड़ी हुई है जिसके टार ब्लैक हैं। पीछे डी_टी_एच की छतरी लगी हुई है और ऑरेंज कलर से देवाल पेंट है एक बाइक खड़ी है जिसपे हेलमेट लगा है।

यह एक कॉलेज है। कॉलेज की बिल्डिंग है और वहा पर रेलिंग बनी हुई है उसके बाद मे एक- पार्क है जिस--

कुछ पेड़ बड़े है कुछ पेड़ छोटे है कुछ पेड़ झड़ी दार है कुछ पेड़ पति वाले है उयपर आसमान दिख रहा है खुला हुआ आसमान--